ये एक बर्गर हट कैफे नजर आ रहा है और इसके अंदर बर्गर का बैनर भी लगा हुआ है।

जिसके अंदर कुछ समान दिखाई दे रहे है और इस म्यूजियम का गेट सीसे का है।

ये एक वी बाजार मॉल है इस मॉल के अंदर बहुत सारे समान नजर आ रहे हैं।

ये एक बिल्डिंग नजर आ रही है और इस बिल्डिंग के बाहर गार्डन भी दिखाई दे रहे है।

ये मुझे बड़ा-सा पहाड़ दिखाई दे रहा है इस पहाड़ मे एक फ्लैग लगा हुआ है।